के ऊपर सीरीजें लगी हैं और पेड़ जैसे सीरीज पूरे लपेटी गई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही लग रही है यह होटल।

कपास की खेती की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको --

और रोड भी बहुत अच्छा दिख रहा है और पीछे बड़ा पहाड़ है जो की बहोत सुंदर लग रहा है।

यह एक ए.टी.एम. की फोटो है जिसमें अ ए.टी.एम. है और इंडी कॅश ए.टी.एम. --

इस तस्वीर में एक शीला बन रही है।

और ट्रेक्टर से एक आदमी कुछ काम कर रहा है और पीछे बहोत सारी ईटे रखी हुवी है।

गाड़ी के टायरों को भी साफ कर रहा हैं वो आदमी जो बैठा हुआ है।

दिख रहा है हरे हरा-भरा और उसमे एक --

उसपे उत्सव लिखा हुवा हे और निचे घोड़े है।

इस तस्वीर में एक नगर निगम कार्यालय भागलपुर का --

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही हे।

और ऊपर से एक पोस्टर लगा हुआ है रॉयल एनफील्ड का जो की एक बहो --